पुस्तक भंडार नाम की दुकान है जिसमे ग्रे कलर का चैनल लगा हुआ है और घर पे सफेद कलर से पुताई की गई ही-है।

सामने की तरफ कुछ पहाड़ दिखाई पड़ रहे है पहाड़ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे है और यहाँ पे सामने की और एक जो है स्विमिंग पूल दिखाई पड रहा है जिसमे स्लाइड वाले अ ह ब्रेकर लगे हुए है और --

और कैंची से बाल काटता हुआ दिखाई पड़ रहा है एक चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा आदमी व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जींस पहने हुए भी उसकी दाढ़ी को शेव कर रहा है।

सब्जी मंडी जैसी दिख रही है जिसमे एक तरफ बैंगन गोभी टमाटर आलू प्याज बहुत सारी सब्जियां रखी हैं।

कुछ आदमी बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं बहुत सारी बाइके खड़ी हुई हैं।

स्विंमिंग पूल है जिसमे काफी सारा पानी है पानी काफी साफ है और बहुत सारे स्लाइड वाले झूले लगे हुए है जैसे कि ब्लू येल्लो रेड ब्लैक और काफी राउंड वाला भी झूला स्लाइड वाला लगा हुआ है।